इस पानी में छठ पूजन के लिए यहाँ पर खड़ी है यह यह छठ पूजन बिहार में बहोत ही धूमधाम से मनी जाती है यह छठ पूजन माँ छठी मइया के आराधना करते हैं।

बहुत से जंगली जानवर इस पानी मे डूबकर नहाते हैं। यह --

इस नदी के पानी बहुत ही गहरी है यह नदी के पानी में बहुत सारे छोटी-बड़ी मछलीयाँ रहती हैं ।